रंगोली रंग-बिरंगी रंग से बनाया गया है और पाँच छै महिलाएं खड़ी है सब ने उजले रंग का साड़ी पहना हुआ है।

आदमी के टेबल पे एक कैलकुलेटर एक कॉपी और एक केची और एक कलम रखी हुई है।